हर एक कमरे में ए_सी लगा हैं।

ईसा मसीह के चर्च की पिक्चर है यहां पर बहोत सारे लोग --

अपने आंगन में घास लगाई है।

डिजाइन बनाया है इस पर रंग भी बहोत सुंदर--

ये पिक्चर आलू की पिक्चर है यहां पर ढेर सारे आलू दिखाई दे रहे हैं।

हो गया है और अंधेरा होने वाला है चारों तरफ--

सड़क के आसपास वृक्ष नजर आ रहें हैं।

भीड़ इतनी है कि लोग छत पर बैठे हैं।

हिरण बहोत ही सुंदर लग रहा है।

यह मैदान एक गार्डन का लग रहा है।

वृक्ष भी हरे भरे नजर आ रहे हैं।

ये पिक्चर डॉक्टर के रूम की पिक्चर है।